यह रात्री का समय है | यहाँ पर एक यात्री बैठा हुआ है। प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा --

एक चिड़िया घर है जहाँ पर बहुत से पक्षी जाल के अंदर बंद है।

यहाँ पर क्रिकेट मैंच खेल जा रहा है और मैंच चालू है।

हमें क्रिकेट मैंच खेलना बहुत पसंद है।

सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है बिल्डिंग के आस पास पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यह एक ग्राउन्ड है जहाँ पर बच्चे खेल खेलते हैं यहाँ पर एक लड़का --

यह एक दुकान है। दुकान पर सिगरेट बीड़ी तंबाकू नमकीन बिस्कुट आदि चीजें मिलती हैं।

धूप और घांस को गुजरती है।